और स्नीकर्स भी पहने हुए है साथ ही साथ दूसरा खिलाड़ी ग्लव्स हैलमेट और हाेति पहना हुआ है।

इधर उधर देख रहे हैं साथ ही साथ हमें कुछ लकड़ियां भी दिख रही है जिस पर यह बैठे हुए हैं खड़े हुए है |

चित्र में हमें एक बडा सा गेट दिख रहा है इसका रंग हरा है साथी साथ यहाँ पे एन्ट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जो की शर्ट पहने है ]साथ ही साथ निचे इन्होंने धोती पहन रखा है।

ऐसा लग रहा है ये अपने टीचर के साथ खड़ी हुई है और ये बहुत ही सुंदर पोशाक में है।

इस दृश्य में हमें दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो कि बड़े-बड़े चट्टान के अंदर हैं।

ये तो पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों गए हैं पर ये मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और ये कुछ चीज को दिखा रहे हैं।